यहा बहुत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही है बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है और इस तरफ बहुत सारी दु --